व्हाइट कलर का पीला कलर का और ग्रीन कलर का और यहां लाल रंग का पंखा भी दिखा रही है।

अ म शिवलिंग जैसी है ये फोटो खींच रही है वो तो लाल रंग का शर्ट पेहना हुआ है।

अह फोटो खींच रही है वो तो ट्रैक पहना हुआ है और ऊपर ब्लू --

प्लेट के ऊपर कुछ सामान रखा हुआ है पूजा के लिए। कार की पूजा कर रहे हैं ये लोग।

ये तो एक फलों का दुकान है यहां तो तरह तरह के फल दिख रही है यह यहां तो तरबूजा का फल और--

यह तो पार्किंग प्लेस है यहां तो कार्स ज्यादा दिखा रही है और वहां एक सीलिंग --

ये तो एक ऑफिस रूम है यहां तो कुछ नहीं दिखा रही है केबिनस --

अ पीछे कुछ दिखा रही है और अ ऑटो के ऊपर पीला रंग है।

कार दिखा रही है वो भी ग्रे कलर का ही है एक व्हाइट कलर का है और पीछे गमले पे पौधा दिखा रही है जैसी है।

सामान दिखा रही है कुछ टाइप्स ऑफ क्रीम्स पाउडर सब कुछ दिखा रही है।

क्रीम कलर का और एक क्रीम दिख रही है और लाल रंग का कुछ सामान दिखा रही है।

बैठ के जा रही है वहां पे एक पोल भी है दू दूर से बिल्डिंग भी दिखा रही है।